सामने एक पानी की बोतल लगी हुई है और एक सामने पल्क है और एक सामने चेयर रखी हुई है।